यहां पे एक पार्क दिखाई दे रहा है पार्क के अंदर बहोत सारे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं।

यहां पे टेबल है काउंटर है बहोत सारे टायर्स और चेयर दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक बड़ी सी ऑफिस दिखाई दे रही है यहां ऑफिस के अंदर अलग-अलग काउंटर्स और शेल्फ दिखाई दे रहे हैं।

और ये पत्थर बहोत बड़े और छोटे पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे स्टेज को बहुत सारे फूलों से सजाए हुए हैं। बहुत सारे लाइट्स है यहां पे ग्रीन कलर का कारपेट दिखाई दे रहा है यहां पे --